और उसके आगे में कई सारे आदमी पैदल जा रहे है।

बहुत ही अच्छा दिख रहे है रूम और जैसे की एक ठो सोफा भी दिख रही है।

और आगे में पक्का का मकान भी दिख रहा है और एक ठो और एक पुलिस भी उसमें खड़े है और उसके आगे में पेड़ -पौधे दिख रहे है और दो ठो खंभा लगा हुआ है खम्भा के ऊपर तीन ठो तार लगा हुआ हैं ।

मुझे। इस तस्वीर में एक जिम का दुकान दिख रहा है फूल और फुग्गो से सजा हुआ है ब्लैक और रेड कलर का फुग्गा लगा हुआ है और उसे और उसके चारों तरफ बल्ब जल रहा है और बहुत ही अच्छे से दिख रहा है नीचे टाइल्स लगा हुआ है दो व्यक्ति--

और नीचे में पाइप भी फिट लगा हुआ है और बहोत ही अच्छे से दिख रहा--

खुर्सी और पक्का का मकान तो दिख रहा है एक भी लगा हुआ है आसपास और चारों तरफ बल्ब जल रहा हैं ।

मुझे इस तस्वीर में बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है और उसके आगे में पेड़ भी दिख रहा पड़ा हुआ है।

मुझे इसके तस्वीर मे काई सारे पुरुष दिख रहे हैं और बहोत ही अच्छी हैन्सम हैं और उसके आगे में व्हाइट और नीला कलर का सजाया गया फुगा से स्वागत कर रहे हैं और उसके--